और ऊपर एक पंखा लगा हुआ है और एक सोफा और दो कुर्सी भी लगी हुई है।

यह एक केंद्र है जिसका नाम नीमराणा है इसके आगे तीन चार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी है।

और तीन चार बच्चे भी खड़े हैं इसके आगे दो होंडा की गाड़ी भी खड़ी है और पीछे दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी है।

सोफे वाले पलंग लगे हुए हैं उन पर सो सके--

रेड पेंट किया गया है और आगे बहुत ज्यादा और अति सुंदर हरियाली भी लगी हुई है।

इनके आजू बाजू गमले भी रखे हैं जिनमें पौधे लगाए गए हैं यह तीन मुर्गे बहुत बड़े बड़े मुर्गे हैं।

यह एक रोड के साइड में किराणा स्टोर की दुकान का दृश्य है जिसमें --